एक बंदा जो है रेड अ कलर पहने हुए हैं।

कुर्सियां लगीं हुईं है कुछ लोग बैठे हुए हैं एक आदमी मोबाइल चला रहा है बाद में ए_सी है एक फेन है उसके बगल में एक बैग है।

उधर हरी घास दिख रही है एक हुक्का टाइप का कोई बर्तन है जो मिट्टी का है वो दिख रहा है।

सामने दो पंखे लगे हुए हैं और बगल में एक रॉड लगी हुई है फायर एक्जेस्टर भी लगे हुए हैं।